ये अंदर एक आदमी है और बड्डे वाली टोपी भी मिल रही है।

आकाश का रंग नीला और सामने की ओर दो लाइटें नजर आ रही है।

म्यू चेरी से सजे हुए हैं।

यह दृश्य किसी होटल या किसी बैंक्विट हॉल की लग रही है।

सामने की ओर एक एक आदमी भी खड़ा है कुछ कर रहा है सामने एक गाड़ी लगी हुई है।

बार के पिछले स्लिप पर बोतल रखी हुई है सामने की ओर दो लोग बैठे हैं।

यह तस्वीर एक सड़क बाजार की है तस्वीर में एक दुकान कुछ लोग और एक स्कूटर दिखाई दे रहा है।

यह एक काली और नारंगी रंग की स्पोर्ट्स साइकिल है।

यह तस्वीर एक दुकान के अंदर की है जो नमकीन और अन्य खाने के सामानों से भरी हुई है।

दुकान में तीन लोग हैं सामने वजन नापने वाला मशीन भी है।

शॉपिंग करने के लिए कपड़े दिख रहे हैं और नीचे में भी कई तरह के टी_शर्ट एक सामने एक बच्चों की खिलौने और एक गार्ड और एक आदमी बिलिंग कराते हुए दिख रहा है।

सामने की दो दीवारे सफेद रंग से रंगी हुई है अंदर की ओर बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे--

सामने की और एक काले रंग की रोड भी नजर आ रही है।

और एक यूनियन बैंक नाम का बैंक भी दिखाई दे रहा है।

चट्टानों और पहाड़ों के सामने बैठा है उसके हाथ में एक पानी का बोतल है।

कमरे में कई खंबे हैं और फर्श गिला है।

इस दृश्य में एक नदी गंदी नदी बहती हुई दिख रही है।

यहां का दीवार सफेद रंग का है और ऊपर की छत में लाइटें और सफेद रंग की दीवार है।

आकाश में बादल बिल्कुल साफ छाए हुए हैं।